कुछ लोग के हाथों में कैंडल नजर आ रहा है।

यह एक शादी का दृश्य है।

कुछ बड़े बड़े वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है यहां पर हमें कुछ प्लेट रखे हुए देख सकते हैं।

बैनर पोस्टर उसके ऊपर पी_वी_आर जैसे शब्द लिखे हुए दिखाई दे रही है।

जमीन पर कुछ टाइल्स का प्रयोग किया गया है।

यहां पे बहुत सारे बेचेंस को लगाया गया है।

यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड जिस पे स्टैंडर्ड वॉशिंग एंड सर्विस सेंटर लिखा है।

यहां पर कुछ चेयर को लगाया गया है।

यह एक गाड़ी के शोरूम की दुकान दिख रही है।

यहां पे पुरुष ने एक टोकरी में बहोत सारा सामान उठाया हुआ है।

यह एक सुंदर मंदिर का दृश्य है।

यहां पर हमें तीन स्लैब दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमें एक बेसिन दिखाई दे रही है।

सीलिंग पर कुछ पंखे खूबसूरत दृश्य दे रहे हैं।

सीलिंग पर बहुत ही सुंदर लाइट्स लगाई गई है।

यहां पे कुछ बड़े बड़े वृक्ष हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पर लोहे के बने हुए दो कंपार्टमेंट्स दिख रही --

यहां पर हम कुछ पैकेट फूड्स को देख सकते है।

वहां पर एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर रखा गया है।

यहां पर एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

यहां पर बहुत सारे टेबल और चेयर लगे हुए देख सकते हैं।

यहां पर बहोत सुंदर तरीके से गुड वाइब्स ओनली जिसपे बहोत येलो रंग का लाइट लगा हुआ है।

पीछे एक बड़ी सी पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

बहोत ही सुंदर टाइल्स का प्रयोग किया गया है।

यह एक गार्डन का दृश्य है यहां पे हमें साफ सफाई का व्यवस्था दिख रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा सीमेंटेड एरिया जिसके ऊपर कुछ कचड़े फेंके हुए दिख रहे--

वहां पर हमें एक लोहे का पोल लगा हुआ परदृषित हो रहा है।

दो बड़े बड़े ऑरेंज रंग के पिलर दिख रहे हैं।

अंदर धूप की रोशनी आती हुई नजर आ रही है।

पीछे बहोत अंधेरा दिख रहा है।

यहां पर बहुत पाइप उसके ऊपर पर्दे लगे हुए दिख रहे हैं।